यह एक झरना का दृश्य है जहां पर पानी बह रहा है।

नीचे पे बहुत आदमी औरत है अगल बगल बहुत बड़ा पेड़ है ।

गोल घेरा करके एंट्री का दिवाल दिया गया है ।

बोट के ऊपर एक कपड़ा का लेयर बना हुआ है जिससे आदमी धूप से बच रहे है।

यह जहां का दृश्य है जहां पे बहुत सारे गमले पर फूल लगे हुए हैं।

ब्लू रंग का यहां पे ये बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है टाटा मोटर्स ।

एक औरत काम कर रही है सामने बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं।

इधर से ए मशीन से धुंआ निकल रही है।

फ्रिज के अंदर कोको कोला है यहां पे बॉक्स बनी हुई है बॉक्स के अंदर बहुत सारे सामाने रखे हुए हैं।

यह एक मार्केट का दृश्य है जहां पर बहुत बड़े बिल्डिंग बने हैं आस पास में।

यह एक समुद्र के बगल का दृश्य है।

यह एक होटल का दृश्य है जहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

मले पे पौधे लगे हुऎ हैं पौधे पर लाइटें लगी हुई है।

टेबल है एक अलमारी टाइप का अलमारी के अंदर बहुत समाने लगे हैं लाइट लगे हुए हैं।

यह एक फोटो का दृश्य है जहां पर एक घर बना हुआ है घर का रंग ग्रीन है।

सामने दो आदमी है एक आदमी नीचे खड़ा है उसने पिंक पीला कलर के टी शर्ट और ब्लैक कलर के पेंट पहना है सामने एक टेबल है।

दिवालों पर बैलून लगा हुआ है रंग बिरंगा रंग है पिंक येलो रेड ।

यह एक जगह का दृश्य है जहां पर बहुत सारे घर बने हुए हैं।

पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पर लिखा है झारखंड ट्रैवल डेप्टोमेंट सोसाइटी ।

नीचे कुछ कपड़े फेके हुए हैं बहुत सारे सामने पेड़ हैं सामने एक टावर है।